ऊपर एक बोर्ड --

इसमें देखने को मिल रहा है की कोई गाड़ी का सर्विसिंग चल रहा है।

सामने तीन बंदे दिख रहे हैं दो बंदे इसमें बैठे हुए हैं।

और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

पास में ही रेलवे ट्रैक है।

और इसमे पाइप्स का सामग्री--

यह तस्वीर किसी वाटर पार्क --

फिलहाल इसमें तीन बंदे दिख रहे हैं।

जोकि एक बंदे का पैंट का कलर है ब्लैक --

स्कूल का नजर आ रहा है।

बेडरूम में व्हाइट कलर की चादर बिछ रखी है।

और एक मंदिर का गेट बंद है।

इसमें बहोत सारे चेयर्स लग रखे हैं।

जिसमें बहुत सारे बैट्स और हॉकी --

स्टिक्स भी देखे जा सकते हैं।

और इसके बाहर टू व्हीलरस बाइक --

बंदे नजर आ रहे हैं एक बंदा--